यहाँ पर बहोत सारे पड़े यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई अगल-बगल जो बाउंड्री हो रही हैं उसमें भी बहोत कुछ लिखा हुआ हैं।

यहां पर एक बहुत सारे आ हया पर फ-बैलून दिख रहे है पीछे की तरफ एक दीवाल है जिस पर वाइट कलर का पेंट है इसमें तस्वीर भी लगी हुई है यहा पर दिख रहे--

--पर जो तस्वीर यहा पर दिख रही है वो यहा पर एक माला पहनाइ हुई है जो की एक अंकल है उनको यहा पर एक अंकल है जिनने वाईट कलर के कपड़े पहने हुये है साइड मे एक अंकल चेयर पे बैठे हुये है जिनहोने जेब मे हाथ डाल के रखा है।

यहाँ पर एक कुछ फंक्शन वैगरह शो हो रहा है यहाँ पर बहुत सी लोग पब्लिक खड़ी हुई है लेडिस भी हैं जेंट्स भी हैं बच्चे भी हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक लाइट भी लगी है और प्लस का आइकन भी यहां पर दिख रहा है जो दीवार है उस पे यहां पर व्हाइट कलर का पेंट दिख रहा है नीचे कारपेट भी बिछी हुई है यहां पर ग्रीन कलर की इधर एक दिया भी जला रहे हैं कुछ लोग यहां पर।